के आगे एक औरत है।

यह एक रेलवे स्टेशन लग रहा है।

यह रेलवे स्टेशन राजा भात खावा का लग रहा है जो लाल रंग से पेंट है।

आस पास बहोत सारे पेड़ और पौधे हैं और यह एक ट्रेन स्टेशन है।

सामने का इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है और इधर अभी बारिश आ रहा है।

आगे बिस्कुट है एक क्यू_आर कोड है और दो लोग खड़े हैं।

पीछे बहोत सारी खाने की चीज़ें कप वगैरा रखे गए हैं।

दो लोग रिसेप्शनिस्ट के साथ बात कर रहे हैं और आगे बोर्ड में लिखा है मे आई हेल्प यू ।

ये नजारा फ्रेंड्स क्रिएशन नाम की आ एक ठो स्टूडियो स्टूडियो का है।

फोन नंबर है नाइन जीरो सिक्स फोर टू सिक्स जीरो टू सेवेन नाइन और दूसरा नंबर है नाइन सेवेन थ्री टू फाइव नाइन वन सिक्स थ्री वन ।

बहुत सारे बैग एक्स्ट्रा सामान सब चश्में सब रखे गए--

हवाई जहाज उड़ने की प्रक्रिया कर रही है और हवाई जहाज का कलर व्हाइट और रेड है।

यह देखिए एक डांसर लग रही है।

यह दृश्य एक गराज का है जिसमें कि दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

रस्ते में बहोत ही सन्नाटा है आसपास बहुत सारे पौधे हैं।

ऊपर बहुत सारे रेलिंग्स हैं और साइड में व्हाइट कलर से पेंट किया गया है। और यह घर आ टीन से बना हुआ है। ऊपर इसका टीन है।

एक एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ है।

यह एक स्टोर का नजारा है स्टोर का नाम है दीप माया स्टोर और अलीपुरद्वार में--

और इसमें फोन नंबर है एट टू फाइव जीरो एट वन नाइन थ्री नाइन इसमें हम कॉस्मेटिक और ग्रोसरीज खरीदारी कर सकते हैं।

अपनी वैन के पीछे तरफ की डिग्गी को खोला गया है और उसके साइड के दरवाजे को खोला गया है उसकी रिपेयरिंग चल रही है।

ये देख के कोई सरखारी कार्य के लिए खड़े हैं यही दिखाई दे रहा है।

पर ये नजरा एक भट्टी का लग रहा है।

बहोत सारे मोबाइल रखे हुए हैं उसके बाद बहोत सारी एयरफोन वगैरा चार्जर एक्स्ट्रा हैं।

वो पानी है आ वो ब्लैक कलर की पाइप से बरस रहा है फुल लाल और वाइट कलर के है।

हां ये दो मंजिला बिल्डिंग है और इसके बोर्ड में लिखा गया है कंप्यूटर सेंटर और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर सब दिए गए है साइड में वॉल है।

बहोत सारे हरे भरे जंगल है आस पास बहोत सारी लड़कियां है पत्थर है और हो सकता है नीचे नदी भी हो।

इसने पत्थर को पकड़ा हुआ है और ऊपर एक डाली है जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं।

ये नजारा एक घर का है जिसमें से तीन घर है और--

एक महिला और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो बैठकर कुछ खा रहे हैं।

यह दृश्य में एक बिल्डिंग है जिसमें सुपर बाओइ लिखा गया ह--

पीछे एक टावर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आस पास बहोत सारे पेड़ होते हैं।

इसका जो आउटर कवर है वह ग्लास का दिख रहा है।

हम पोस्टपेड बिल रिचार्ज सब कर सकते हैं और इसमें हम एक कर्मचारी को देख सकते हैं जिसने लाल कलर का टी शर्ट पहना है।

सामने आम का पौधा है।

पार्क का नजारा है बहोत सारे लोग यहां पर बैठे हैं और चल रहे हैं।

इसमें ब्लैक कलर की ऑटो है और बहुत सारी यात्रियां और लोग हैं सामने रोड में चल रहे हैं।

और ये जिम में रेड कलर का कारपेट है और वो ब्लैक कलर का कार्पेट के ऊपर खड़ा है।

ऊपर पेर में लाल कलर के फूल स्थित है और सामने एक घर है जो बहुत पुराना लग रहा है।

ऊपर बहुत सारे लाइटिंग सब टंगे हुए हैं।

ये मौस हां ये हमारा समय दिवाली का हो सकता है।

यह देख के एक फर्नीचर हाउस लग रहा है।

बहोत सारी कलर की जर्सी पहनी हुई जैसे कि ग्रीन रेड और ग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है।